बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग का पेन्टिंग कलर वाइट कलर मे दिख रहा है काफी सारी विंडोस दिख रही है विंडो का कलर जो है वो कुछ ब्लू कलर मे दिख रहा है सामने गेट दिख रहा है गेट का कलर जो है वाइट ब्लेक कलर मे दिख रहा हैं ।

दिख रही है बिल्डिंग का कलर जो है कुछ ओरेंज और येलो कलर पेन्टिंग थी किया हुआ दिख रहा है कुछ वाइट कलर का किया हुआ दिख रहा है सामने मे काफी सारी दिवारे दिख रही है जो वाइट कलर के पेन्टिंग की दिख रही है कुछ पेड़ दिख रहे है पेड़ ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ।

और एक रोड दिख रहा है और आसपास मे आसमान दिख रहा है ब्लू कलर मे कुछ वाइट कलर का दिख रहा है और काफी सारे पेड़ है जो काफी ग्रीन कलर मे दिख रहे हैं ।